यहाँ पर एक सार्थक अकेडमी है यहाँ पर बच्चो को पढाया जाता है यहाँ हिन्दी इंग्लिश मीडीअम के सभी बच्चो को पढाया जाता है।

इस गेराज़ में दो तीन लोग काम कर रहे है और एक लोग बैठा हुआ है यहाँ पर सभी लोग गाड़ी रिपेयर --

ये हे एक मकान है इसमें कई डिजाइने निकाली गई है और इसमें कई सारी लाइट्स लगी हुई है इसमे बहोत से पंखे लगाए गए है बगल मे टेंट तना गया है।

यहाँ ग्लोबल फिशरियस लिखा हुआ है ।

यह एक जंगली इलाका है यहाँ पर सड़क नजर आ रही है सड़क के आस पास कई पेड़ पौध लगे हुए है और पेड़ पौधों पर पोस्टर लगे हुए है यह ईश पर सफेद रंग की पट्टी डली हुई है।